और इस तरफ भी हम देख सकते है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने शर्ट पहनी है।

दूर पर हम देख सकते है की बड़े खम्भे--

दुकान के सामने हम देख सकते है की एक व्यक्ति खड़ा है जिस--

वो व्यक्ति के सामने दूसरी तरफ पत्थरो में एक व्यक्ति बैठा हुआ नज़र आ है।

क्यों वहाँ पे दूर पे एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

और हम देख सकते है जैसे की पिले फूल ऑरेंज फूल नज़र आ रहे है और--

यह एक बड़ी रोड दिखाई दे रही है रोड के ऊपर दो गाड़ी जाते हुए नजर आ रहे है।

व्यक्ति खड़ा है जिसने हरी टी_शर्ट नीचे हाफ_पैंट स लाल और सफ़ेद रंग के सॉक्स पेहने हैं और --